यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

और यहां पर झोपड़ी भी है।

और यहां पर एक पेड़ पौधे भी खड़े हुए हैं।

यह एक घर है और इसके अंदर बहुत सारा गत्ता पड़ा हुआ है।

इसके अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है।

और उसके ऊपर लाइट भी लग रही है।

और इसमें सांप भी है।

और इसके पीछे दुआर भी है।

उसके बराबर में फूल वाली लकड़ी लगी हुई है।

यहां पर बहुत सारी दुकान है।

और यहां पर बहुत सारी मोटरसाइकिला भी खड़ी हुई हैं।

और यहां पर बोर्ड भी लग रहा है।

इसके बाहर तीन आदमी खड़े हुए हैं।

इसके बाहर पेड़ पौधे हैं।

और इसमें एक बलब भी जल रहा है।

और इसके बाहर खंबा भी है।

इसके अंदर एक कैमरा भी लगा हुआ है।

इसके अंदर लाइट लगी हुई है।